ऊपर हिंदी में सैलून और नीचे प्रोफेशनल लिखा हुआ है बीच में एक लड़के का --

नीचे की ओर दुकान में बहोत सारे कपड़े सजे हुए हैं और कुछ पैकेटों मे अंदर रखे है जबकि दुकान की बाहर साइड दोनो तरफ--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

भवन के बगल में बहुत बड़ा झाड़ दिखाई दे रहा है भवन लगभग के तीन फ्लोर है।

दबे हुए दो पिलहरो के सहारे जुड़ा हुआ एक मकान सा दिख रहा है।